और नीचे एक लाल कलर की मॅट भी लगी हुई दिखाई दे रही है और एक काच लगा हुआ सा सामने दिख --

यहाँ कुछ पीले फूल दिखाई दे रहे है गेंदे के जिनपर एक बीच मे लाल फूल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है फूलों के नीचे हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति का हात दिखाई दे रहा है जो की फूल को एक सफ़ेद फूल को पकड़े हुए है एक पतला सा रास्ता कच्चा दिखाई दे रहा है।

बूक रखी हुई दिख रही है पीछे की तरफ एक ट्यूब लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है और एक दीवार लाइब्ररी के स्टैंड पर कुछ लिखा हुआ दिखा--

और कुछ चट्टान के पास पौधे दिखाई दे रहे है हरे-भरे और नीचे कुछ कचड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा--